यह मस्जिद काफी बड़ा है। इस मस्जिद दो तल्ले की है। यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढने आते हैं। शुक्रवार को यहाँ विशेष नमाज़ पढ़ा जाता है जिसे जुम्मा कहते हैं।

यह नदी काफी बड़ा है। इस नदी में बहुत सारे पानी है। यहाँ पर बहुत सारे मछ्ली भी होंगे इस नदी में बहुत से पटावन के काम में लाया जाता है पानी को इस नदी पर एक पुल है।

यहाँ पर एक कागज को साट दिया गया है।